जिसमें एक पंखा लगा हुआ है काले कलर का और इधर एक अलमारी में बहोत सारी किताबें रखी हुई हैं।

जो अपने हाथ से माला बना रहा है सफेद कलर की फूलों की।

और आगे कुछ घर बने हुए हैं पार्क के आगे।

पेट्रोल टंकी पे बहोत सारे हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं।

इधर कोने में एक चित्र बना है जहां पे दो लोग खड़े हैं एक आदमी और एक औरत।

जमीन में बहोत सारी हरी भरी घास भी है।

सामने एक घर है जिसमें एक ए_सी लगी हुई है।

एक आदमी हाथ में कन्नी पकड़ के बरबर कर रहा है।

और एक गमले में पौधा रखा हुआ है हरा भरा।

उसपे कुछ लोग काम कर रहे हैं बांस के ऊपर खड़े होकर के।

और यहां पे बहोत सारे हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं।

यह एक मेट्रो स्टेशन है।

और इसके आगे बहोत सारे बिजली के खंभे लगे हुए है जिनमें तार है बहोत सारे।

और उसके बगल में काले कलर की स्कूटी खड़ी हुई है।

यहां पे बाहर मोरंग और गिट्टी पड़ी हुई है।

साथ में पंखे लगे हुए हैं जो कि काले कलर के पंखे हैं।

यह पे लिखा हुआ है बोर्ड पे श्री श्याम परिवार लखनऊ--

घंटी के पास बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। लाल कलर के हरे कलर के पीले कलर के।

एक पंख लगा हुआ है काले कलर का।

यहां पे एक काले कलर की कुर्सियां पड़ी हुई है और उसपे पे एक आदमी बैठा हुआ है।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

यह एक ऑफिस है जहां पे बहोत सारी काले कलर की कुर्सियां पड़ी हुई हैं।

यहां पे दो औरते बैठी हुई--

यहां पे बहुत सारे बड़े बड़े से हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं जो कि दिख रहे हैं।

यह एक पेट्रोल टंकी है और यहां पे बहुत सारी कारे खड़ी हुई हैं।

और जो लाल हैं हरे हैं पीले हैं बहुत से कलर के कपड़े रखे हैं।